ये तस्वीर में हमें काफी सारे ऑटो अ अ कार और खंभे नजर आ रहे हैं।

इसके ऊपर लिखा है द बेस्ट पिज्जा और ऊपर सफेद कलर से पेंट किया गया हैं।

ये तस्वीर में हमें काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे योगा करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लाल कुछ पीले कुछ सफ़ेद रंग के कपड़े में योगा कर रहे हैं।

ये तस्वीर में हमें एक गैरेज का जगह दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें काफी बड़ा सा घर नजर आ रहा है।

ये तस्वीर में हमें काफी बड़ा मॉल नजर आ रहा है जिसके अंदर काफी सारे सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।